और इसको एक साथ रखा गया है जो कि देखने में काफी ज्यादा--

और यहाँ एक टी_वी भी लगी हुई है यहाँ का जो फ्लोर है वो वाइट कलर के टाइल्स से --

और एक आदमी है जो कि बीच में बैठा हुआ है यहां पर।

एक जो हैउस पर रेड कलर का।

अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि--

ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें एक आदमी है जो कि मिरर में देख रहा है।

और यहां पर दो-दो डस्टबिन रखा हुआ है जो कि एक ग्रीन रंग का हैऔर एक--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

यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैंऔर अपने सिर पर--

और टेंपू का है इस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और ये जो टैंपू है।

पीले रंग का है इस पर जो सामान रखा हुआ हैवो एक मशीन है और इसके पीछे--

यह जो जगह है यह काफी ज्यादा साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है लेकिन वहां कुछ कचड़े फेंके गए हैं।

इस स्कूल का नाम लिटरेला वैली स्कूल है।

ये एक पेट्रोल पंप का--

कुछ लोग मौजूद हैं पेट्रोल डरवाने के लिए।

यह जो जगह दिख रही है इस--

लिखा हुआ हैब्लू कलर से ब्लू --

भी लिखा हुआ है यह एक बहुत बड़ी।